है जो सफेद कलर का है और मस्जिद की बॉन्ड्री लाल रंग से पेंट किया --

जैसाकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बोहोत सारे बच्चे बेठे हुए हैं उन्होंने --

और दूर-दूर तक सिर्फ पानी है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यह कोई कमिटी हॉल है जिसे खूब सुंदर से लाइटिंग से --